सामने एक बरा बगीचा देखने को मिल रहा है जिसमे छोटे छोटे कंकर देख ने को मिल रहे हैं।

और कुछ गमला ऊपर लकड़ी में भी टंगा हुआ है और ऊपर आसमान है।

सामने कुछ बिल्डिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक गाड़ी देखने को मिल रही है।

और बहोत सारे खिड़कियां भी देखने को मिल रही है बिल्डिंग के आगे एक बड़ा मैदान है।

और निचे में कई सारे बॉक्स टाइप का न बना हुआ है जो ब्लू कलर का है उसमे बोर्ड भी है।

सामने एक बहुत बड़ा पार्क देखने को मिल रहा है यहाँ नीचे में टाइल्स लगाई हुई है जो वाइट कलर की है।

जो ब्लू कलर का है एक लाइट भी देखने को मिल रहा है और कुछ खिरकीया भी नजर आ रही है।

व्यायाम करते नजर आ रहे है और इसके दीवाल पर कुछ तस्वीरे देखने को मिल रही है और कुछ --

और स्विमिंग के ऊपर एक पौधे जैसा दिखने को मिल रहा है जो ब्लू कलर के हैं।

एक बड़ा जंक्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर कई सारे है और सीढ़ी लाल कलर की है।

में दो पंखे है पंखा उजला कलर का है और एक छोटा सा भी पंखा देखने को मिल रहा है।